और तख्त लगा हुआ है सामने सीधे हाथ--

सीधे हाथ की तरफ पर्दा लगा हुए--

इसमें दाएं बाएं तरफ दरखत ही दर--

और बाएं तरफ जमीन का रंग तब्दील है।

घर का रंग नीला है एक का रंग सफेद है।

और लड़कियों ने लाल रंग की जोड़ी--

नीचे जमीन पे बोहोत से दरख्त है।

और लटके हुए हैं और मुक्तलीफ --